ये एक कैफे है वहाँ चार-पांच लोग बैठे हुए है वहाँ टेबल और चेयर्स है और कुछ तस्वीर लगी हुई है और लाइट्स है।

एक पुस्तक की दुकान है। वहाँ दो इंसान खड़े है। वहाँ बोहोत सारी पुस्तके रखी हुए है।

एक रेस्टरेंट है। वहां कुछ लोग खड़े हैं। वहां एक डस्पिन है।

वहां केशरी और पीले कलर का हार है एक पंखा है।

वहां दो गाड़िया रखी हुई है वहां दुकान में बहुत सारे झाड़ू रखे हुए है एक रोड है।